सामने एक हॉस्पिटल दिखाई दे रही है उस पे लिखा हुआ मेडिसिन आई_सी_यू पोस्ट उद्योगी विभाग पी_बी_एम अस्पताल--

सामने बड़ा हाॅल सा दिखाई दे रहा है और दो लोग साइड में सोफ़े जैसे खड़े हैं सा लग रहा है बाहर एक --

सामने चेयर पे कुछ लेडिस बैठी हुई ये सामने एक बोर्ड लगा हुआ उसपे लिखा स्वा--

वहा है परीक्षा दिखाई दे रहा है से अलग अलग बैठने की सीटें ।

सामने एक घर दिखाई दे रहा है ऊपर मे दो मंजिलायें दिखाई दे रही है बाहर योगा उंगरीयो --

सामने कं कोई कंपनी दिखाई दे री है वहां मजदूर बाहर उम् खड़े हुए है बहुत से मजदूर हैं।

सामने एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप दिखाई दे रही है उसमें बहोत सारे सामान व्यवस्थित तरीके ड्रॉर में--

लिखा हुआ है मंदिर पे बाहर पार्किंग में बाइक स्कूटी और साइकिल पार्किंग के बारे में लिखा है मेरे सा --

साइड में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं सामने हरी भरी दूब लगी है कुछ पेड़ फूल दिखाई दे रहे हैं साइड में एक दीवार के --

दिखा रिसर्च ऑफ मेंटेन के कुछ बना हुआ है कच्ची रोड से दिखाई दे रही है एक --

सामने कटिंग की शॉप दिखाई दे रही है एक लड़का खड़ा है उसने अभी जस्ट कटिंग कराई रखी साइड में कट मार रखा उसने ज --

बॉक्स के अंदर बहुत समान रखा हुआ है सभी समान को बेहतर तरीके से नीचे दिख --